इथे एक पेट्रोल पंप दिखाय र हो एक गाड़ी दिखा रही एक अ --

एथे एक सफेद रंग की कार दिखा रही एक बाइक दिखा रही एथे बहुत सारो कचड़ा --

खड़ा हुआ हुआ है उधर लकड़ी का सामान रखने की चीज़े दिखा रही --